स्पीकर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई--

यहां बहुत सारे औरतें आ के--

नारंगी रंग का सिंदूर लगाके सब कोई खड़े हुएं हैं।

ये फोटो किसी रेस्टोरेंट का है बहोत ही अच्छे से साफ सुथरा है।

ये है एक जगह की फोटो है जहां की बारिश के वजह से बाढ़ आ चुकी है बहुत सारा पानी भर चुका है।

स्टाइल बाजार के साइड में प्लैनेट फैशन नाम का भी एक शॉप है।

ये फोटो देखने में कोई कराटे क्लास की लग रही है जहां की बहोत सारी छोटे बड़े बच्चे व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में --

दुकान के सामने कई सारी चेयर रखे गए हैं। एक कूलर है।

इसको पत्तों से सजाया गया है लेकिन यह सूख चुके हैं यहां कुछ--

और लोग वहां खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं।

ये फोटो किसी राजकमल नाम के ज्वैलर्स दुकान का हैं।

और ठीक राशन दुकान के ऊपर ही एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है आशीर्वाद आटा का--

स्कूल के अंदर बगीचे में कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं और उन्हीं के पास दो मैडम खड़ी हुई है।

बगीचे के आस पास पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

जिसका नाम है जय दुर्गा हेलो--

फैशन सो का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसी के सामने बहोत सारे चेयर रखे गए है जहां कि लोग--

टोस्ट दालियां बहोत कुछ अवेलेबल है।

ये फोटो है एक बड़े से होटल --

ये फोटो किसी ढाबे का लग रहा है जिसका नाम है भाई जी फैमिली ढाबा--

इस ढाबे को बहोत ही सारे कलर फुल लाइट से सजाए गए हैं जैसे कि पिंक ग्रीन रेड ब्लू --

जैसे कि संबलपुरी डिजाइन से और पिलर को--

बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया है लाइट लगाई गई हैं।

बहोत सारी टेबल चेयर्स रखी गई हैं एक ड्राम भी रखा गया है।

दुकानों के सामने दो तीन साइकिल और एक स्कूटी रखी गई--

कालिया वड़भद्र और सुभद्रा जी की भी पूजा की जाती है।